और बहुत सारे आदमी यहा खड़े है। और उसके पिछे एक बडीसी बिल्डिंग दिख रही है। और--

इस फोटो मे एक स्विमिंग पूल दिख रहा है बडासा स्विमिंग पूल है और इसके इसमें एक आदमी स्विमिंग कर रहा है और इसके पीछे एक बड़ा जंगल है उस जंगल में नारयल का झाड भी--

इस फोटो मे एक बड़ासा चर्च देखने को मिल रहा है।

इस फोटो मे अपुन को तीन यह कुर्ता पैजमा देखने को मिल रहा है।

ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है। और नीचे एक लाले कलर का शीट भी देखने को मिल रहा है।